सामने एक मैदान है मैदान में कीचड़ है और छोटी-छोटी घास है।

एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने लोहे के खंभे लगे हुए हैं खंबे के पास से रोड निकली है।

वाहन के पास एक व्यक्ति खड़ा है।

सूरज डूबता हुआ नज़र आ रहा है।

बाउंड्री के आस पास पेड़ लगे है।

जहाँ पे लोहे के खंबे लगे है।

यहाँ बहोत सारी मशीन रखी हुई है।

हाल में लाइट लगी है और लोहे के खंभे लगे हुए है।

पेड़ों के बीच एक रुकने का स्थान बना हुआ है।

यह एक बड़ी सी मूर्ति है जो हनुमान जी की है आसपास बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

यह बहोत बड़ा गार्डन है जिसमें तार की बाउंड्री है और कुछ पौधे हैं और कुछ पेड़ है।

और कुछ कुर्सियां रखी है मंदिर के पीछे बहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे है।